पौधे दिख रहे हैं बहुत सारे आदमी बात कर रहे हैं बाइक भी खड़ी है और एक औरत भी दिख रही है तस्वीर अच्छी है एक खंभा भी दिख रहा है और सब साथ में बातें कर रहे हैं तस्वीर भी अच्छी है।

और टाइल्स भी लगे हैं एक आदमी का पैर भी दिख रहा है दो चार।

कार आदमी बैठे दो आदमी बैठे हैं दो आदमी खड़े हैं एक आदमी चाय पी रहा है दो कुकपैड भी रखे हैं बिस्किट भी रखे हैं एक आदमी लाल टी-शर्ट पेहने हुए हैं कुछ आदमी में जैकेट पहने हुए है।